यह एक बैंक नजर आ रहा है। जिसका नाम बैंक ऑफ़ बड़ौदा है। यह अभी खुला हुआ है।

यह एक बहोत बड़ा मैदान नजर आ रहा है। जहाँ पे कई मकान भी नजर आ रहे हैं। जिन पे भिन्न-भिन्न रंग कर रखे हैं।

एटीएम भी है जिसका नाम कैनरा बैंक एटीएम है।